एक ढाबा है और ऊपर में बंधू ढाबा वान लहोल लिख के है।

ऐ में खाना और मॉन्क लोग का फोटो लगा के रखा हुआ है।

हमें एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है

बाहर में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है वो दरवाजा में लॉक भी लगा हुआ है।

यहां में एक बहुत ही बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत ही ज्यादा क्रॉस का निशान है।

यहाँ में बहोत ही ज्यादा मिस्त्री लोग है और वो मिस्त्री लोग एक छत का ऊपर में खड़ा होकर है।

प्रसाद में भी बहुत ही ज्यादा आदमी लोग है वह आदमी जो का सामने में--

आगे में एक गोल पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

उसका पीछे में बहुत ही ज्यादा गच्ची है पूरा जंगल से भरा हुआ है।

दूर में एक बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इसका साइड में फेविकोल भी दिखाई दे रहा है।

जो कि लड़की लोग का ग्रुप को देख रहा है जो कि डांस कर रहा है एक दूसरा का हाँथ पकड़--

हमें बहुत ही ज्यादा आदमी लोग दिखाई दे रहा है जोकि एक चीज का पूजा कर रहा है।

घर में बहुत ही ज्यादा गर्मी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत ही ज्यादा पेड़ और गच्ची भी है।

और एक टावर पोस्ट दिखाई दे रहा है और तीन वायर भी दिखाई दे रहा है

आगे मे एक आदमी खड़ा होकर व्हाइट बोर्ड मे कुछ लिख रहा है।

ये एक दुकान है जिसके ऊपर मां चंचला ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ है।

टेबल है और उसका ऊपर में एक काला सा प्लेट रखा गया है।

प्लेट में बासमती राइस है वो बासमती राइस का सामने में एक नींबू है।

यहां में एक खेत भी दिखाई दे रहा है जिसका दो बाउंड्री भी दिखाई दे रहा है।

उसका पीछे में बहुत ही ज्यादा गच्ची भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत ही ज्यादा जंगल से फैला हुआ है।

और एक बरा सा बिल्डिंग है जहां पर बहुत ही ज्यादा स्टेप्स है।

और उसका अलग साइड में भी एक बाइक है और एक आदमी बाइक चला के भी जा रहा है और आगे में भी एक बाइक दिखाई दे रहा है।

और दूर दूर में बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जैसे धुआं निकल रहा है।